उस पूल पे बोहोत सारे आदमी देखने के लिए आए--

और इस प्लेन में फ्यूल डाला जा रहा है।

जो कि दिखने में काफी अच्छा और सुन्दर है इसके बगल में एक बड़ा सा पहाड़ है|

यह एक बिल्डिंग है ।

लड़की को प्रोपोज़ करता है।